एक बॉयज कि ड्रेस जो हरे और काले कलर की है। एक कोट पेंट हैं।

ये एक पार्क हैं। यहां पर दो लोग घूम रहे हैं जिन्होंने नीले कलर का जैकेट और हरे कलर का पैंट पहने हुए हैं।

ये एक स्टेज है। इस पे एक सोफा लगा हुआ जो एक लाल कलर का है।